जो ग्राहक है वो पेन खरीदने के लिए यहाँ पर आया हुआ है दुकान में ढेर सारा किताब रखा हुआ है।

और ढेर सारा लकड़ी का फर्नीचर भी रखा हुआ है और प्लास्टिक का फर्नीचर भी रखा हुआ है।

इसमें देखने से ऐसा पता चलता है कि मछली पालन करने के लिए ऐसा पुकार का निर्माण किया गया है।

किसी विद्युत स्टेशन का यह एक दृश्य दिखाई देता है इस तरह का विद्युत स्टेशन --

ऐसा लग रहा है जैसे विद्युत ग्रिड का यह निर्माण होने को जा रहा है।

और आश्चर्यजनक बनाया गया है इसका जो ऊपर का गुंभज का आकृति है बहुत ही सुंदर और सराहनीय बनाया गया है।

और नदी के किनारे से किसी ने इस दृश्य को अपने कैमरे में शूट कर लिया है।

ये दोनों भी दुकान जो दिखाई दे रहे हैं कैस्टोल बाइक पॉइंट भी लिखा हुआ है इस दुकान पर और गिव योर बाइक थ्री ए --

यानी कैस्टोल का जो मोबिल आता है उसी मोबिल का यहाँ पर प्रचार किया गया है दोनों दुकान के ऊपर में --

और नीचे में ग्रीन कलर का पेंटिंग किया गया है जो काफी सुंदर और सराहनीय है।

गुलाब अगरबत्ती दिखाई दे रहा है गोल्ड हंबर नामक अगरबत्ती भी दिखाई दे रहा है इसके अलावा--

इसमें फूलों की भी काफी सारी डेकोरेशन वगैरह किया गया है जो बहुत सुंदर और सुशोभित हो रहा है।

अक्सर हम लोगों को देखा जाता है जिसमें एजुकेशन का भी दृश्य दिखाई दे रहा है और लाइफ इंश्योरेंस का भी ऑफिस --

और एक अं घर भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में सब सामान रखा हुआ है बाउंड्री के अंदर --

इसके दूसरे साइड में नदी में जो बांध बनाया जाता है बांध कर उसको पानी को रखा जाता है वो बांध भी दिखाई दे रहा है।

ढेर सारे फोर व्हीलर गाड़ियाँ लिखी लगी हुई दिखाई दे रही हैं सभी गाड़ियाँ व्हाईट कलर की हैं और एक ब्लैक कलर की फोर व्हीलर गाड़ी आती हुई भी दिखाई दे रही है।

और इस पर जो गाड़ी का नंबर है लिखा हुआ है।

एक इलेक्ट्रिक दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक के सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब--